यहाँ पर हमें एक मस्जित दिखाई दे रहा है यहाँ पर कई सारे गुम्बद दिखाई दे रहे हैं मस्जित के ये पुराने सी उखड़ी हुई सी मस्जित --

यहाँ पर हमे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दे रही है | मंदिर के इस छोर पर --

ए.टी.एम. के गेट के बाहर एक व्यक्ति हाथ फोल्ड पीछे फोल्ड किये हुए खड़ा है तथा --

टेबल्स भी रखे हुए है यहां हॉल मे एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहां पर हमे एक टायर सा भी दिखाई दे रहा है।

ऊँची बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक बड़ा-सा एक खम्बा दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमे एक क्लिनिक दिखाई दे रहा है जिसमे एक व्यक्ति बैठा हुआ है चेयर पर।

एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है तथा दूसरी ओर फिर एक गेट लगा हुआ है। ओ --

मार्केट्स के शॉप दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए है।

काफी बड़ी-सी लग रही है यहाँ बीचो-बीच एक पानी में भरने का टैंक बनया गया है।

हाईलाइट किया गया है नीचे एक लाइट --

यहां पर स उन बा बा अंदर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है।

कुछ लिखा हुआ है सिक्सटी वन जैसा है यहाँ पे काफी वायर्स दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ टेबल पर से कुछ ले रही है यहाँ पर हमें खिड़की दिखाई दे रही है जो खुली हुई है और पौधा भी लगा हुआ है यहाँ पर एक --

बॉउंड्रीज़ दिखाई दे रही है उस बॉउंड्रीज़ के अंदर काफी सारे व्य बच्चे बैठे हुए है।